बगल में दो पिलर खड़े हुए हैं।

जिसमें चारो तरफ लोग घूम रहें हैं।

उसके बगल से कुछ तारे गए हुए है कांच लगे हुए है हरे कलर के बगल से एक रेलिंग लगी हुई है।

बगल से एक लड़का बैठा है। जो मोबाइल चला रहा है। जो येलो कलर की टी शर्ट पेहने पीछे एक मटका रखा हुआ है।

कुछ फूल खिलते हुए हैं कुछ में लगे हुए हैं कुछ मुरझाए हुए हैं।

फर्नीचर लगा है जो कि पिंक और वाइट कलर का फर्नीचर है।

ब्लू कलर का पिलर है और एक चोकोलेटी कलर का सामने गेट लगा है जिस पर ताला लगा हुआ है।

पीछे दीवाल पर कुछ पत्थर टंगे हुए है साइड से कुछ कीलें दिख रही है।

बगल से एक डली हुई है।

एक लड़के की जो कि आ नीले कलर का स्कार्फ डाले हुए है जिस --

और खुला आसमान है साइड से लाइटिंग ह --

सामने एक सड़क है दीवाल बन --

आ ग गेट बना हुआ है।

सामने एक मेला है जिसमें चारो तरफ भीड़ हो र --

साइड से मिट्टी का डेर लगा है।

पी हाथो पे हाथ रख के पैर में पैर पैसारे हुए बैठे हुए --